दिखने में बहुत ही अच्छे लगते है काफी सुंदर है यहां पे बहुत सारा मिठाईयां सब है बहुत ही अच्छे देखने में लगते हैं काफी सुंदर है ये दुकान।

और यहाँ पर घर भी है जो लोगो को देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे है और यहां पे बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए है बहुत ही हरा-भरा देखने में लगता है।

यहां पे आप देख सकते है ये नदी है देखने मे बहुत ही अच्छे लगते है काफी सुंदर है और यहां पे नाव है जो कि बहुत ही बड़े-बड़े नाव सब है।

यहाँ पे हम देख सकते हैं ये नदी हैं देखने मे बोहोत ही अच्छे लगते हैं और यहाँ पे देख सकते है आप यहाँ पे मोटरसाइकिल टाइप का ये बोट हैं जो कि यहाँ पे ये दोनों लोग मजे से यहां पे चला रहे हैं देखने मे बोहोत ही अच्छे लगते हैं।

साईकिल है और यहाँ पे रिक्सा भी है जो कि दखने मे बहुत ही अच्छे लगते है काफी सुन्दर है।